व्यक्ति की प्रतीत हो रही है उसके बाहर कई आदमी पुरुष व बच्चे खड़े हुए हैं।

आई डोंट नो वो क्यों खड़े हुए है इन पर ये बिल्डिंग काफी बड़ी बिल्डिंग का रंग हल्का गुलाबी है जो की काफी सुंदर और आकर्षण नज़र आ रही है।

आप नहीं जा रहे हो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अगर आप ही चल जाओ तो हमें इतनी दिक्कतों का सामना करना ही ना पड़े लेकिन आप तो नकटे हो।

इस तस्वीर में मुझे एक बस नजर आ रही बस का रंग सफेद रंग का है और यह एक जयपुरीट बस नजर आ रही है जिसके अंदर होम्योपैथिक हॉस्पिटल का--

पंखों के पेज लगे हुए हैं और कमरे में एक लाइट है एक फूल है दो तितली है दो गुलदस्ते हैं दो फूल है दो फोटो है।

है और उनके गोरे बच्चे गोरे मां बाप नज़र आ रहे है बच्चे का रंग हल्का काला है और बच्चे खेल रहे है बच्चों --

और उनके माँ बाप उनको लड़ रहे कूट रहे पीट रहे पर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दवाई का नाम डिटोल है।

आरती कहीं दूर-दूर से आए हुए भक्त जन उनका इंतजार कर रहे हैं और वह बहुत अच्छे दिख रहे हैं और --

एक रोड होते हुए जा रही है रोड की गली में एक बाइक खड़ी हुई है और एक पीछे की ओर एक पार्किंग स्टॉल लगा हुआ है जिसके अंदर काफी सारी गाड़ियां पार्क की जा सकती है।

स्कूल का बोर्ड नजर आ रहा है और उसीके पीछे की ओर एस_एस कॉलेज का बोर्ड नजर आ रहा है यह --